यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे है।

एवं इसके चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ पौधे लगे हुए है हरी घास लगी हुई है ये पानी हरा दिख रहा है।

देखने के लिए इसमें लायटिंग भी लगी हुई है।

कार्य करता की फोटो एवं कुछ फिल्म कार्यकर्ताओं की फोटो दिख रही है।

एव म इसके साइड मे एक बड़ी छत है जिस पर कुछ पाइप्स लगे हुए है।

इस फोटो मैं हमे पटेल कलर्स की शोप दिख रही है।

इस दुकान के अंदर पैंट करनेवाले कलर रखे हुए है कुछ बाल्टिया रखे हुए है एवम इस शॉप के बाहर स्कूटी खड़ी हुई है।

यह फोटो किसी बस अस्टॉप की है यहाँ पर बहोत सारी बसे खड़ी हुई है।

दो पेड़ पौधे दिख रहे हैं यह गेट खुला हुआ है।

इस मस्जिद के ऊपर तीन माईक लगे हुए है एवम एक गेट है।

पूरे जंगल में पेड़ पौधे लगे हुए हैं कुछ पत्थर भी हैं।

यह फोटो किसी जंगल की है। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह फोटो एक पहाड़ की है जिसके ऊपर एक मंदिर है ।

यह फोटो एक ओ_पी_डी के बाहर की फोटो है जिसके बाहर पार्किंग मे कुछ स्कूटी खड़ी हुई है।